एक रेलवे स्टेशन जहाँ रेलवे प्लेटफार्म है प्लेटफॉर्म के बगल में एक ट्रेन खड़ी हुई है ट्रेन के बगल में बिजली का खंबा लगा हुआ है सामने में कुछ पेड़ पौधे है और कुछ पानी की टंकी है।